चीयाँ है और एक ही घर में लगता है माँ है सब बच्चों को अपना एक्सरसाइज करा रही हैं यह बहुत अच्छी बात है आज के जमाने में बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे एक्सरसाइज कराते हैं और ये लोग भी वो आसन कर रहे हैं ।

यह पूजा का पंडाल है बहुत बढ़िया दुर्गा जी का सारी प्रतिमाए लगी हैं गणेश जी सरस्वती जी लक्ष्मी जी और विश्वकर्मा जी ये सारे लोग यहाँ हैं।

इका शिव शक्ति मोटर्स करके है जो टोटो बेचता है अधिकृत बेचता है काफ़ी अच्छा दुकानदार है ये यहाँ से सब लोग टोटो ले जाते हैं और चलाते हैं ।

रहता है इनका शरीर और काफ़ी फर्स्ट क्लास का रहेगा।

तजिया के दिन सब लोग शोक थोड़ा मनाते हैं। यह तजिया एक स्थान से दुसरे स्थान को जाता है और इसमें काफ़ी लोग अपने आप को --

भगवान बुद्ध कि प्रतिमा है प्रतिमा बहुत अच्छी तरह तरीके से रखी गई है और हम को लगता है कि यह किसी शारनाथ इस टाइप का कोई जगह है जहाँ पे बुद्ध कि प्रतिमा को बहुत अच्छे से --

कैसे पानी को छोड़ा जाता है कैसे पानी को इकत्र करता है कैसे पानी को बढ़ियाँ से मैनेज करता है इ सब बांध सिखाता है कि कितना फ़ायदा होता है ।